एक आदमी ने आसमानी कलर की शर्ट पहन रखी है।

इसके आसपास में दो लाइट लगी हुई है।

औरत ने नीले कलर की जैकेट पहन रखी है यह एक नाव पर बैठे हुए हैं।

और एक आदमी ने नीले कलर की शर्ट पहन रखी है।

और एक आदमी ने जींस पहन रखी है।

एक चित्र है जिसमें मुझे सामने की ओर एक शीशे का गेट लगा दिख रहा है।

और छत पर बहुत से बल्ब लगे दिखाई दे रहे हैं।

यह एक चित्र है जिसमे मुझे सामने की ओर एक फ्रिज दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी ने सफेद कलर की शर्ट पहन रखी है।

और एक आदमी बैठा है जिसमें एक बलियान पहन रखी है।